गेंदे का फूल का रंग हल्का पीला और लाल है जो बहुत ही सुंदर लग रही है।

चित्र में बतक और मोर दिखाई दे रही है बतक का रंग सफेद और हल्का भूरा है।

यह एक कॉलेज है जिसका नाम किसान इंटर कॉलेज --

इस चित्र में बहोत ही बड़ा एक तालाब दिखाई दे रही है जिसमें बहोत सारा पानी भरा हुआ है इस तालाब के --

अगल-बगल बैठने के लिए जगह बनाई गई है तालाब के किनारे में बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिख रहे है।

इसमें हर तरह के समाने दिखाई दे रही हैं जैसे अगरबत्ती मैंगी बिस्किट मिक्स्चर --

का नाम भी मार्ट शॉपिंग मॉल है। यहाँ हर तरह की सामानें --

यहां बहोत सारे डीजे बॉक्स लगी हुई है और बहोत सारे लाइट्स भी लगे हुए हैं।

इस बस में चार खिड़कियां दिखाई दे रही हैं जिसमें भूरे कलर के पर्दे लगे हुए हैं।

सामाने मिलती है यहां हर तरह की बुक्स भी मिल जाती हैं।

पेट्रोल डीजल सभी तरह का गाड़ियों का सर्विसिंग किया जाता है। यहाँ सभी लोग आते हैं।

सभी सफेद कलर की ड्रेस और लाल रंग की टोपी पहने हुए हैं।

अभी टमाटर पूरी तरह से पके नहीं है। इसका रंग अभी हरा है।

सामने में एक बहुत ही बड़ी नदी दिखाई दे रही है जो पानियों से भरा हुआ है। नदी के पास एक नाव दिखाई दे रही है।

जिसका रंग नीले रंग का है। नदी के बगल में तीन लोग खड़े हुए हैं जो नाव में बैठने जा रहे हैं।